उधर कुछ लगेगा रोड कुछ ही कुछ लगाए एक पीछे में खेजड़ी का पेड़ है खेजड़ी पेड़ के नीचे कुछ खड़े आदमी खड़े है उधर पीछे एक बिल्डिंग सा दिखाई दे रहा उधर कुछ फुहारा सा कुछ दिखाई दे रहा है पानी का।

ये कुछ तस्वीरे सी कुछ लगी हुई है दीवार पे कुछ तस्वीरे लगी हुई हैं उधर एक महिला सी कुछ बैठी दिखाई दे रही है उसके आगे शीशा कुछ दिखाई दे रहा है।

इसमें ऑटो गाड़ियां आ रही है जा रही है उधर पीछे एक बिल्डिंग कस दिखाई दे रहा है इधर साइड में भी कुछ बिल्डिंग सी कुछ दिखाई दे रहा है कुछ रोड सा ऐसे कुछ लगा दिखाई दे रहा है बिल्डिंग --

यह पुराना कुछ बिल्डिंग सा कुछ दिखाई दे रहा है पुराना बिल्डिंग सा उसमें फैन है फैन लगा हुआ है अलग अलग पिलर बने हुए हैं पिलर पे कुछ बिल्डिंग सा ठहरा हुआ है।

इधर साइड में मां सीता का कुछ लिखा होगा यह दुकान है उसके अंदर बहुत सारे पेन पड़े है बा बाहर में एक बाइक भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

यह एक बहोत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इधर साइड में एक रोड दिखा दे रहा है बीच में साइड में इधर पेड़ दिखाइ दे रहा है लाइट भी लगा दिखाई दे रहा है।

यह एक कुछ दुल्हा से ऐसी कुछ सजाया गया है तीन पांच छः आदमी बैठे से सजाया गया है बीच में एक मेन आदमी बैठा है राजा साईं जैसा पहना हुआ है एक इसको --

बना हुआ है दो आदमी खड़े दिखाई दे रही है वाइट कपड़े में ऐसी कुछ दिखाई दे एक बाइक भी खड़ा दे रहा है एक बोर्ड लगा दिखा दे दिखाई दे रही है।

एक जगह दिखाई दे रहा उसमें लाइटिंग सा कुछ दिखाई दे रहा है ये सजावट की गई है कुछ आदमी बैठे दिखाई दे रहे हैं होटल टाइप में सामने ए_सी भी लगा हुआ है ए--

पीछे में कुछ पेड़ जैसे कुछ दिखाई दे रहा है बाइक जैसी छोटी गाड़ी दिखाई दे रही है इधर भी एक महिला दिखाई दे रही दिखाई दे रही है उधर भी कुछ गाड़ियां ऐसे कुछ दिखाई दे रही हैं।

यहां एक जिम सेंटर दिखाई दे रहा है उसमें डम्बल पड़े दिखाई दे रहे हैं डंबल साइड से साइड में से डम्बल चले हुए दिखाई दे रहे हैं डम्बल दिखाई दे रहे हैं।

उसमें कुछ दिखाई दे रहे है कप पड़े दिखाई दे रहे है।